एक लड़का पढ़ाई कर रहा एक लड़का देख रहा एक लड़का लिख रहा--

जगह भी है और खाने वाली जगह में एक लड़की बैठी है पीला कलर का टी शर्ट पहन के वो भी खाने वाली जगह से --

और बादल भी दिख रहा तीन ठो छानी है।